यहाँ पर क्रिकेट बौलिबोल खोखो खेला जा रहा है दूर में एक बहुत बड़े घर दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी तक छबाई और पलस्तर नहीं हुआ हैं ।

यह एक कमरे का रूम हैं यहाँ पर दो तीन एक व्यक्ति एक आदमी के ऊपर मे क्या लगा रहा हैं।

वाह बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे है जो हरे - हरे है |

यह बाइक सर्विसिंग या स्कूटी सर्विसिंग करने की जगह हैं।

वाह यहाँ पर सिर्फ नीला रंग का क्या दिखाई पड़ रहा है।

यह भारतीय स्टेट बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है।

वह यहाँ पर छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे है।

हरे पिले नीले गुलाबी आसमानी सब कलर के और दूर में बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पास कई दुकान भी नजर आ रहै है दूर में एक खंबा भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे तार व लाइट कनेक्शन किया गया है।